नीचे कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं।

ऊपर लाल रंग का बड़ा सा पोस्टर है।

पीली नारंगी रंग की बहोत से गेंदे के फूल नजर आ रहे हैं।

जमीन पर रंग बिरंगे मैट बिछे हुए हैं।

बड़े से मैदान को देख रहे हैं।

नीचे हमें एक बड़ा सा सटर दिखाई दे रहा है।

सामने एक रैक पर कुछ डिब्बे रखे हुए नजर आ रहीं हैं।

बहोत से लोग भी हमें यहां पर--

बड़े से मैदान को देख रहे हैं।

साथ ही एक बड़ा सा भवन हमें--

एक रेतीला रस्ता दिख रहा है।

कुछ बड़े पेड़ और लताएं हमें दिखाई दे रही हैं।

कांच का दरवाजा लगा हुआ है।

सामने सफेद रंग की टेबल है।

साथ ही यहां हमें कुछ चप्पलें दिखाई दे रही हैं।

दीवार पर कुछ कपड़े टंगे हैं साथ ही हमें कुछ पौधे टंगी हुई--

साथ ही एक बड़ा सा फ्रिज है।

कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

सामने एक बड़ा सा टेबल है जिसके ऊपर कांच रखा--

जिसपर सफेद और लाल रंग की--

एक घर हमें दिखाई दे रहा है जोकि खप्पर का बना है।